नदी के बगल में एक बड़ा सा नाव है।

नाव के पास दो लड़के खड़े हैं दोनों हाथ उठाके सूर्य के ओर देख रहे हैं और --

कान के बगल में एक आंटी बैठी हुई है साड़ी पहन के।

उन्होंने एक चप्पल भी पहना हुआ है।

ब्रिज के पास दो बाइक लगे हुए हैं।

यह एक पहाड़ का फोटो है।

यह एक स्कूल है। स्कूल का नाम सनराइज द्वारिका एकेडमी टेन प्लस टु है।

ऊपर में तीन तार है और एक बड़ा सा पोल है।

और यहां पे तराजू में चिकन तोला जा रहा है।

अंकल ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है दोनों अंकल का कलर व्हाइट है शर्ट का--

निकल के बगल में एक वो पानी की बोतल जार रखी हुई है लगा के।

एकदम तिरंगे की तरह अच्छे से चमका दिया गया है होटल को सजा के।

लोग शायद बातचीत कर रहे हैं।

बहुत ही मजा आ रहा है बच्चे लोगों को खेलने में।

और दो कार रखा हुआ एक कलर एक कार का कलर है ब्लैक एक कार का कलर है व्हाइट --

उसके बगल में एक लाइट जैसा लैंप लगाया गया है।

और काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है जिम को।

काफी सारी महिलाएं खड़ी है सिंदूर लेके।